बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे दुकान हैं। यहाँ एक अमूल कंपनी का भी दुकान है। यहाँ पर अमूल के तरह-तरह की चीज बिकते हैं।

यहाँ पर जान-माल एवं पशु-पक्षी आकर पानी पीते हैं यहाँ पर तीन लड़का खड़ा है यहाँ पर दो लड़का सफेद कपड़ा पहने है।

यहाँ पर लड़की योगा कर रहे हैं यहाँ पर तरह-तरह के योगा हो रहे हैं इस लर इस घर में दरी भी बिछाया हुआ है।

इस मैदान के किनारे एक पहाड़ है | यह पहाड़ काफ़ी बड़ी है | इस पहाड़ पे बड़े बड़े पेड़ भी हैं | यह पहाड़ काफ़ी सुंदर है ।